''घर बना हुआ है चारो तरफ पानी है पेड़ है पौधे हैं बहोत ही ब्यूटीफुल देखने में लग रही है यहाँ फोटोशूट भी आके करा सकते हैं इट्स सो ब्यूटीफुल एंड पेड़-पौधे भी हैं हरी-हरी उम् अच्छा हवा आती --''

दो गो बिल्डिंगे है बहुत अच्छा तरीका से सज़ा हुआ है ।

बहोत अच्छी डिज़ाइन से बनाई गई है ज्यादा महंगी ब्लू हरा लाल पीला बहोत ही अच्छी कलर से डिज़ाइन की गई है ब्यूटीफुल बहोत ही सुंदर दिखने में लग रही है आप यहाँ से साड़ी ले सकते है रंग-बिरंग के आसानी --

बहुत ही अच्छा टेंट देखने में लग रहा है । अगर डेम का पानी एक साथ खोला जाता तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है बहुत ही दिक्कत छोटे-छोटे गॉव में ज्यादा भर जाते पानी लेकिन डेम का पानी रखने की वजह है की बिजली का उत्पाद उत्पादन होता हैं ।